bash में array operations के spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे कि एक array array को घोषित कैसे करें और इसे values नियुक्त कैसे करें
घोषणा के दौरान एक array को इनिशियलाइज़ कैसे करें
एक array array की लम्बाई और उसका n वाँ अवयव ज्ञात करना
एक array array को print करना
इस tutorial के अनुसरण के लिए आपको लिनक्स operating system के साथ परिचित होना चाहिए
सम्बंधित tutorials के लिए कृपया spoken hyphen tutorial dot org पर जाएँ
इसके लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
* ubuntu लिनक्स 1204 os
* gnu bash version 4110
अभ्यास के लिए gnu bash version 4 या उससे नए की सलाह दी जाती है
अब array की परिभाषा और उसके मुख्य लक्षणों के साथ शुरू करते हैं
* एक array कई values के साथ एक variable है
* values समान या भिन्नभिन्न तरह की हो सकती हैं
* array के size के लिए कोई उच्चतम सीमा नहीं होती है
* array के सदस्यों को क्रमागत होने की ज़रुरत नहीं होती है
* array index हमेशा zero से शुरू होता है
अब हम देखेंगे कि array को एक value कैसे घोषित करें और नियुक्त करें
एक array को घाषित करने के लिए रचनाक्रम है
declare hyphen a arrayname
declare कीवर्ड array को घोषित करने के लिए उपयोग होता है
यह bash में एक अन्तर्निहित command है
array को एक value नियुक्त करने के लिए रचनाक्रम है
name square brackets में index equals to single quotes में value
अब देखते हैं कि घोषणा के दौरान एक array को कैसे इनिशियलाइज़ यानी आरम्भ करें
* array को एक ही समय पर घोषित और इनिशियलाइज़ किया जा सकता है
* elements यानी अवयव को space से अलग किया जाना चाहिए
प्रत्येक अवयव परेन्थसीज़ में होना चाहिए
रचनाक्रम है declare hyphen a arrayname equal to brackets में single quotes में element1 element2 और element3
अब एक उदाहरण करके देखते हैं
एक साथ ctrl + alt और t कीज़ दबाकर terminal खोलें
अब type करें: gedit space array sh space & ऐम्पर्सैन्ड
prompt को खाली रखने के लिए हम ऐम्पर्सैन्ड का प्रयोग करते हैं enter दबाएं
अपनी array sh file में यहाँ प्रदर्शित code type करें
यह line निम्न अवयवों के साथ लिनक्स named array घोषित करती है
यहाँ hyphen a एक flag है
यह array को पढ़ने और values नियुक्त करने की अनुमति देता है
अब slides पर वापस आते हैं
एक array की लम्बाई इस रचनाक्रम से प्राप्त की जा सकती है:
dollar साइन $ curly bracket खोलें hash # arrayname square brackets में at साइन @ और curly bracket बंद करें
nवें अवयव की लम्बाई इस रचनाक्रम से प्राप्त की जा सकती है:
dollar साइन $ curly bracket खोलें hash # arrayname square brackets में n और curly bracket बंद करें
यहाँ n उस अवयव का number है जिसकी लम्बाई ज्ञात की जानी है
array के सारे अवयव यह रचनाक्रम प्रयोग करके printed किये जा सकते हैं
dollar साइन curly bracket खोलें arrayname square brackets में at साइन @ और curly bracket बंद करें
अब text editor पर वापस आते हैं
यह line array लिनक्स में अवयवों की कुल संख्या दिखाएगी
hyphen e backslash escapes की व्याख्या को संभव बनाता है
हमने यह सम्मिलित किया है क्योंकि हमारे पास line के अंत में backslash n है
अगली line array लिनक्स के सारे अवयवों को दिखाएगी
यह line अरै लिनक्स के तीसरे अवयव को दिखाएगी
कृपया ध्यान दें कि एक array हमेशा index zero से शुरू होता है
अंततः यह line तीसरे अवयव में उपस्थित characters की संख्या दिखाएगी
अब terminal पर जाते हैं
सबसे पहले chmod space plus x space array sh टाइप करके file को निष्पादन योग्य बनाते हैं enter दबाएं
type करें dot slash array sh enter दबाएं
output प्रदर्शित हुआ है
array लिनक्स के अवयवों की संख्या या लम्बाई 4 है
debian redhat ubuntu और fedora array लिनक्स के अवयव हैं
array लिनक्स का तीसरा अवयव ubuntu है
और तीसरे अवयव में characters की संख्या 6 है जैसा अपेक्षित था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
इसको सारांशित करते हैं अपनी slides पर वापस आते हैं
इस tutorial में हमने सीखा
* एक array को घोषित करना और values नियुक्त करना
* घोषणा के दौरान array को इनिशिअलाइज़ करना
* array की लम्बाई और इसका nवाँ अवयव ज्ञात करना और
* पूरे array को print करना
एक नियत कार्य में
एक names नामक array घोषित करें जिसकी लम्बाई 7 हो और
* अवयवों की कुल संख्या ज्ञात करें
* सारे अवयव print करें
* और पाँचवाँ अवयव print करें
दर्शाये link पर उपलब्ध video देखें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी नीचे दर्शाये लिंक पर उपलब्ध है
आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ
हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद